जिसका अन्दर से दीवाल का रंग ऑरेंज है।

पीले और कुछ ट्रांसपेरेंट है।

सामने एक बड़ा सा जमीन है जहां नीचे ब्लॉक शॉप में मार्बल बिछा हुआ है जो काला और सफेद जैसा--

सामने नीचे दो थर्मोकोल का बेस है जिस पर की दो केक रखे हुए है।

ऊपर से फूल बना हुआ है उसमें।

सामने एक चश्मा का दुकान है उसके बगल में ज्वेलरी शॉप है।

सामने वाले दुकान में बहोत सारे रैक हैं बहार से शीशा लगा है।

बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर और बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर भी है।

यहां पर दो फूल के छोटे से गमले रखे हैं जो सफेद रंग के है और उसमें नकली फूल लगे--

इस फोटो में एक छोटा सा रूम है जिसके दीवाल का रंग सफेद है।

एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई है।

नीचे जमीन पर सफेद रंग का टाइल्स लगा हुआ है।

इन फोटो में सामने एक बड़ा सा स्टेज बना है।

इस रूम में नीचे टाइल्स लगा हुआ है जो सफेद रंग का है।

सामने एक मोर का खड़ा है ओर वो उसे ढेर सारे पंख है जो कि रंग बिरंग --

शीशा लगा हुआ है और रूम का दीवाल का रंग सफेद है।

रोड पूरा काले रंग का है आसमान पूरा सफेद है।

इस फोटो में एक छोटा सा रूम है जो कि एक ट्यूशन है।

सामने ऊपर में वेंटिलेशन है और बहुत सारे पंखे लटके हुए--

जिसमें फोटो फ्रेम करके रखा हुआ है।

बगल वाला दुकान में शटर जो है बंद है।

सामने एक आदमी है जो काला और सफेद रंग का शर्ट पहना है।

नीचे एक बड़ा प्लास्टिक है जो कि ट्रांसपेरेंट है।

उधर सामने बैठने के लिए बना हुआ है सीढ़ी जैसा।

इस फोटो में सामने एक काफी ज्यादा बड़ा सा जगह है जहां पर बहुत सारे आदमी लोग लाइन से खड़े हैं।

यहां अंदर जाने के लिए रास्ता है।

जिसपे की गाय और मछली बना हुआ है।

बगल में काफी सारे बड़े बड़े हरे रंग के पेड़ है।

दिन का समय है आसमान में पूरा उजाला है।

इस फोटो में सामने एक बस खड़ा है।

पीछे काफी सारे बड़े बड़े पेड़ है जो हरे रंग के हैं।

ज्वेलरी शॉप है जहां पीछे बहुत सारे ज्वेलरी के आइटम रखे हुए हैं।

और बहोत सारे सामन रखें हुये है सामने बहुत सारे आदमी और औरत लोग बैठे हुये है।